पेड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे दो बैनर लगे हुए हैं वो दिखाई दे रहा है जो कि वाइट कलर के यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं और भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है।

लोग बच्चे दिखाई दे रहें हैं एक बच्चे पे पिंक और ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है और वायलेट पर्पल कलर दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं जैसे ग्रीन दिखाई दे रहा है ब्लू दिखाई दे रहा है वाइट दिखाई दे रहा है ऑरेंज दिखाई दे रहा है येलो दिखाई दे रहा है।

कुछ मूर्तियां दिखाई दे रही है यहा पे कुछ औरते दिखाई दे रही है यहा पे कुछ माला दिखाई दे रही है जो कि गेंदे की फूल की जरी हुई है येलो और ऑरेंज कलर की है यहा पे एक कार्पेट दिखाईं दे रही जो ग्रीन कलर की है।

यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई दे रही है यहाँ पे कुछ लाइट्स जलती हुई दिखाई दे रही है और भी बहुत सारा कुछ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ तस्वीरे भी रखी हुई--

छोटी छोटी घांस दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत कुछ सामान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें दिखाई एक बिल्डिंग का कलर येल्लो दिखाई दे रहा है।